हई मास्टर जी खड़ा बारन दु गो मास्टराईनो बारी हइ पीछे खिड़की मे कितना बढ़िया बाहर के नाजारा लौउकता देखे मे बड़ा निक लाग --

सैलून बा कैची केतना बढिया सूंदर बनल बा कम्पोट केतना बढ़िया लगल बा अंदर देख।

एगो टोटो बा एके ऑटो रिक्शा कहल जाला बैटरी से चले वाला रिक्शा ह आ इनके चाभी देके औरत के जॉन साड़ी पहिनले बाड़ी।

हइ लगता आन्हर बाड़न जॉन कंपनी के हइ केतना बढ़िया हइ बनल बा रैनबो के गेट आ देख एगो अउर नया ऑटो रिक्शा --